ये डेस्क रखा हुआ है रेड कलर का उसके ऊपर में एक पानी का ग्लास है बाजू में कुर्सी रखी है रेड कलर की।

और चने वगैरह उ चाट है और एक लड़के के हाथ में प्लेट है प्लेट में चाट है ना चम्मच है।

और एक आगे में हैं लड़का जो कि कुछ बता रहा हैं सब बच्चों को।

और वो जा रहा है उसके हाथ में बैग है।